दूर बहुत सारे पेढ़े दिख रहे हैं ऊपर आसमान--

यहां एक कुलर दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ--

लगा है दोनों साइड पिंक कलर के ऑरेंज कलर के परदे लगे हुए हैं और दोनों साइड दो सफेद गमले रखे हैं जिनमे में बहोत सारे फूल हैं।

यहां एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो क्रीम कलर की है जिस पे पट्टी--